यह एक रोड कासीन दिख रहा है।

और यहां पर बहुत सारे वायर भी लगे हुए हैं।

यह एक मंदिर का सीन दिख रहा है जहां पर एक गोल्डन कलर का बहुत बड़ा गुंबद भी दिख रहा है।

जिसका नाम सजावट ज्वेलर्स है।

ये एक अमूल की दुकानदिख रही है।

जिसका काउंटर भी पूरा खाली पड़ा हुआ है।

और उसी के साइड में एक सोफा और सेंटर टेबल भी रखा हुआ है।

जहां पर अलग-अलग तरह की मिठाइए और चॉकलेट्स रखी हुई हैं।

और ये बिल्डिंग शायद हॉस्पिटल की है।

जो कि शायद एक स्कूल का है।

जिसका नाम भोगेश्वरी भूतका लनी--

और इस स्टेडियम की बिल्डिंग --

ये भोपाल के बोट क्लब का सीन है।

जहां पर ब्लैक एंड वाइट चेयर्स लगी हुई हैं और--

और इस कैफे पे बहुत सारे--

बहोत बड़ी-बड़ी शेल्व्स लगी हुई हैं।

यह एक रोड का सीन दिख रहा है।

जहां पर ऊपर एक--

यह एक मॉल के अंदर की शॉप दिख रही है।

जूलरी लेते हैं यहां की जूलरी बहुत अच्छी होती है।

जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं।

ये एक होटल लग रहा है।

ग्रे और व्हाइट कलर से पूती हुई है।

इस रेस्टोरेंट की दीवारें काले कलर से पोती हैं।

ययोगा क्लास के सामने एक आईना भी--